श्री कृष्णा दूध डेरी नामक इस तस्वीर में दुकान दिख रहा है।

सामने पीछे मूर्ति धरी हुई है जो की बोहोत चमक रही है आगे दो लोग खड़े हुए हैं एक महिला साड़ी पहन कर और एक कोट पहनकर व्यक्ति खड़ा हुआ है।

नीचे गेट भी लगा हुआ है और नीचे गमले में धरे कुछ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ है लाल कलर के पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर में सुधा पार्लर का एक शाप नजर आ रहा है जहां पर खाने पीने का सामन मिलता है।

अंदर काफी ब्रेड वगैरा और अंदर चिप्स भी रखे होते हैं नीचे एक बास्केट रखा हुआ है जिस पे कचड़े फेंकते हैं।

यह एक बहुत ही खूबसूरत झील झाल में पेड़ पौधों के बीच में खड़ा हुआ है।

और यहां पर काफी बेंच रखे हुए हैं यहां पर स्टूडेंट बैठते हैं।

यह तस्वीर एक चर्च का है जहां चर्च के अंदर कुछ लोग खड़े होकर पूजा कर रहे हैं।

तस्वीर में एक नदी दिख रही है जहां पर दो नाव अ अंदर है।

इसके ऊपर ही पेड़ दिख रहा है जो कि काफी हरा भरा है नीचे कुछ सुखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं।

यह कृष्णा हाई कलीनर्स का जो स्टीम प्रेस एंड लाउंड्री है।

इस तस्वीर में एक प्रतियोगिता आयोजित हुआ खेल प्रतियोगिता लग रहा है जहां पर कुछ लोग खड़े होकर खेल रहे हैं कुछ प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं।